वहाँ पे पौधे दिखाई दे रहे है पौधों का कलर हरा दिखाई दे रहा है और वहाँ ऊपर अमम- इलेक्ट्रिक खंभे दिखाई दे रहे है ।

ये चित्र एक स्नैक्स दुकान का है यहाँ पे कोका कोला अअ लिखकर एसा ऊपर बोर्ड है दुकान का दुकान का शटर खुला हुवा दिखाई दे रहा है।

चित्र एक बड़े समुद्र का है समुद्र मे पानी दिखाई देख रहा है और समुद्र के ए किनारे पेड पौधे दिखाई दे रहे है।

घास दिखाई दे रही हे वहा पे आसमान भी दिखाई दे रहा हे इलेक्ट्रिक तार भी दिखाई दे रहे हे।

है जो बैठके है दो कुत्ताई का कलर काला दिखाई दे रहा है वहा पे इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहे है।